मशीन के ऊपर एक व्यक्ति अभ्यास कर रहा है और एक व्यक्ति बैठकर अभ्यास कर रहा है।

पास में ही एक पर्दा भी लगा हुआ है।

बहुत बड़ा सा क्लास है। क्लास में बहुत सारी बैंच लगी हुई हैं। सब भी बैंच लोहे की है और ऊपर की ओर लकड़ी है।

बहोत सारी खिड़कियां हैं क्लास में जो लोहे की बनी हुई हैं ऊपर की ओर बहोत सारी लाइटें हैं जो जल रही हैं कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

सामने जूते चप्पल की दुकान है वहां पे बहोत सारे जूते चप्पल है अंदर की ओर बहोत सारा आईना लगा हुआ है।

घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं जिनमें कांच लगा हुआ है नीचे की ओर भी खिड़कियां बनी हुई हैं जिन में लोहे की रॉड है और एक दरवाजा भी लगा हुआ है बाहर की और एक तार दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारी मशीन रखी हुई है जहां पे बहुत सारे सिस्टम है।

और एक व्यक्ति खड़ा हुआ व्यक्ति के सामने एक टेबल है जमीन में नीली कलर की फ--

ऊपर की ओर एक पंखा लगा हुआ है।

एक बड़ा सा हॉल है हॉल में बहुत सारी लाइटें सभी लाइटें जल रही हैं।

बल के ऊपर कटोरी और बोतल भी रखा हुआ है।

लकड़ी की अलमारी है जहां पे बोहोत सारे कांच है।

कुछ सामान कागज के डब्बों के अंदर पैक है और कुछ खुले हुए रखे हैं।

सामने एक रोड है रोड के पास बहोत सारी वाहन खड़ी हुई है जो वाहन के पास बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं।

और कुछ मंदिर भी बना हुआ है मन्दिर के पास एक लोहे का खम्बा है चारो और बड़े बड़े पेड़ लगे है।

दुकान में टेबल रखी हुई है टेबल के ऊपर सामान हैं।

यह एक क्लास है। क्लास की दीवारों पर बहोत सारे चित्र बने हुए हैं।

आस-पास बहुत सारी लाइटें हैं कुछ लाइटें जल रही हैं कुछ लाइटें बंद है।

पीछे कि ओर एक घर भी बना हुआ है जहां पे बहोत सारी खिड़कियाँ हैं आस पास लोहे के खंभे लगे हुए हैं।

सामने एक पुरुष है और एक महिला है पुरुष अपने हाथों से चाबी दे रहा है महिला चाबी ले रही है।

दो व्यक्ति हैं जो काम कर रहा है एक व्यक्ति मशीन के अंदर कुछ डाल रहा है और एक व्यक्ति बोरी पास खड़ा हुआ है।